यह मेडिकल स्टोर हैं इसमें दरवाज़े शीशे के लगे हुए हैं और नीचे--

यहां गार्डन में एक औरत झाड़ू लगा रही है बहुत सारा सड़क पे कचड़ा है इधर दो कुर्सी रखी है सफेद कलर की उधर--

दीवालें सफेद कलर की ऊपर की छत नीली कलर की उधर एक कुर्सी पे आदमी बैठा है।

से है उधर पीले रंग के पटेल लगी हुई है टीना लगा हुआ--

यह एक लड़का खड़ा है जो ब्लैक कलर की शर्ट पहने है पीछे की दिवाले सफेद कलर की है।

ब्लू शर्ट के पहने आदमी जा रहा है तो पास धूप है सामने पेड़ है सामने कोट का रंग सफेद है और--